अ व्हाइट कलर के फ्लावर है एक बरा सा ब्लैकबोर्ड दिख रहा है जिसमें हैप्पी चिल्ड्रन डे लिखा हुआ है सामने एक लेडी भी है।

अह बड़ा सा खाली एरिया दिख रहा है पीछे अह इंटा का घर टाइप का है।

पीछे एक बना हुआ है जो कि रेडीश टाइप में है एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है।

टूटा हुआ कार का यह रखा हुआ है पार्ट रखा हुआ है एक कार भी है जिसमें पेपर से ढका हुआ है एक दीवार है जिसमें --

हल्की सी लाइट है पूरे रूम अह डार्क है और हल्की सी लाइट दिख रही है उसमें।

अ बकेट टाइप का कुछ दिख रहा है बाल्टी टाइप का और आसपास में लोग काम कर रहे हैं।